अअ इस चित्र मैं कार्यालय नज़र आ रहा है जिसमे पीछे भगतसिंह की तस्वीर लगी हुई है दिवार पर बड़ी सी खिड़की है जो की कांच की है खुली हुई है।

यह पिक्चर किसी फैक्टरी का है जिसमे वर्कर्स अलग-अलग काम करते हुए दिखाई दे रहे है सभी अपना अपना काम कर रहे है ऊपर और निचे मशीन्स दिखाई दे रही है केरेट्स दिखाई दे रही है प्राइस चिपकी--

जो की अलग-अलग कलर्स मैं लिखा हुआ है उनके बहार बहोत सारे ऑटो रिक्शा नज़र आ रहे है जो की साइकल वाले है उसके बहार बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है रोड नज़र आ रहा है इंडिया का फ्लेग--